जैसे की मैं देख पा रही हूँ यह एक इन्विटेशन हॉल है यहाँ पे पिंक और ब्लू कलर के कपड़ो के साथ लाइट को लेके गेट को --

आस-पास बहुत ही बड़ा पेड़ भी मुझे दिखाई दे रहा है बाय तरफ --

और वो लोहे का ग्रिल से घिरा हुआ है छत के ऊपर एक लाइट पोस्ट भी मैं देख पा रही --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये एक फूलों का दुकान है यहां पे बहुत सारे फूलों का चेन रखा है इसमें एक आदमी बैठकर फूलों का माला बना रहा है सामने --

इसके ऊपर एक मशीन भी मैं देख पा रही हूँ कुछ आदमी लोग साइकिल को लेके --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ ये एक बहुत ही बड़ा रास्ता है यहाँ पे बहुत सारे बाइक को लेके आदमियाँ चल रहे हैं और उसके साथ --

और इसके साथ बहुत सारे वैन गाड़ी ऑटो और कार भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत लोग यहाँ पे पैदल भी चल रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पे बहुत सारी बिल्डिंग है बहुत सारी खिरकियां मुझे दिखाई दे रहा है सामने एक दीवाल से बिल्डिंग को घिरा हुआ है इसके--

पीलर है चारों तरफ़ के दिवाल वाइट कलर पे है सीलिंग पर फैन और दिवाल पे कुछ सी_सी_टी_वी कैमरा लाइट भी मैं देख पा रही हूं इसके साथ कुछ--

ये बाई तरफ़ एक पिलर है जिसके ऊपर शेड दिया गया है आसमान में बादल जमा हुआ है चारों पास से कुछ हरे रंग का पेड़ भी मैं देख पा रही हूं दिखने में ये --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

मैं देख पा रही हूँ दाएं तरफ एक घर है जो शेप दिया गया है आसमान नीला है देखने में ये दिन का समय लग रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही है यह जिम सेंटर का रूम है यहां पे जिम का बहुत सारा मशीन रखा गया है जिसमें कुछ लड़के लोग वर्कआउट कर रहे हैं और --

और बाहर एक ग्रीन कलर का कारपेट दिया गया है जिसके ऊपर ब्लू कलर है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने एक रेड कलर का बहुत ही सुंदर एक स्टैंड है जिसके ऊपर कुछ दिया रखा हुआ है वहां पे --

एक ब्लू कलर ऑरेंज कलर व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है रस्ते के ऊपर कुछ आदमी लोग खड़े होकर ट्राक को देख रहे हैं आस --

और बाहर एक येलो और ब्लैक कलर पे एक मशीन खड़ी हुई है दीवार पे कुछ --

आस-पास बहोत सारे पेड़-पौधो से पार्क घिरा हुआ है बाई तरफ एक लड़की अकेली सिट पर बैठी हुई है और दाई तरफ कुछ लड़के लोग एक साथ सीट पे बैठे हुए है।

लाइट से इसको डेकोरेट किया गया है बहोत सारे फैन भी मैं देख पा रही हूँ चेयर के पीछे एक बहोत ही बड़ा --

टेबिल है जिस के ऊपर पिंक कलर का कपड़ा है और यहां पे एक छोटा टेबल के ऊपर एक पानी का डब्बा भी दिया गया है ।